और वहां फेविकोल भी टंगे हुए हमे ऊपर दिखाई दे रहे है ये किताबों की दुकान है।

ही कोई क्लास के सेलेक्ट फोटो दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे--

रहा है सभी किताब रखे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं ये स्कूल की फोटो --

सामने लिखा हुआ दिख रहा है कैसन महाविद्यालय का फोटो है जो जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है।

ये कोई हॉस्पिटल की फोटो है जहां पर बहुत सारे बेड रखे हुए है और इन बेड़ो पर--

कोई मिट्टी की दुकान दिख रही है जिसमें हमें बहुत सारी--

यहां पर हमें बहुत सारी प्यारी आकृति दिख रही हैं जो कि ब्लैक कलर की हैं और बीच में हमें--

सामने हमे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है बोलागी।

यहां पर हमे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा हैं जो कि--

जो हमे ब्लैक कलर के टॉर्च लगे हुवे दिख रहे हैं एक व्हाइट कलर कि हमे पट्टी नीचे दिख रही --

प्लेटफॉर्म दिख रहा है रेल की पटरी है और यहां पर खंभा भी--

और साइड में ब्लैक कलर का कुछ रखा हुआ की दिखाई दे रहा है। पीछे हमे एक रेड कलर का --

आदमी कुछ बता रहे हैं इस लड़की को चेक करा रहे हैं और हमें इनके पीछे बोर्ड भी दिखाई दे रहा--

कोई स्कूल की फोटो है जहां बहोत सारी बेंचा रखी हुई दिख रही हैं।

बहोत चिकित्सालय है धार आपके ये स्वस्थ के मंगल कामना करता है ये चिकित्सालय है धारका--